और एक आदमी काउंटर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके टेबल पर कैंची--

है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

लग रही है जिसपर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरे पर।

यहां पर बहुत सा फर्नीचर का समान--

दे रही है कुछ पर--

बहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है इसके टायर बहोत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं।

और एक रोड दिखाई दे रहा है।

और बीच में कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ बाइक --

पार किए हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है और--

काफी लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक तिरंगा दिखाई दे रही--

यह एक मेकअप का स्टोर है जिस पर बहुत सी क्रीम्स और--

है और स्टोर में काफी लाइट्स दिखाई --

वह एक बहुत बड़ा ग्राउंड--

दे रही और एक इंसान और कुर्सियां है।

दे रही हैं और--

जिस पर बहुत से लोग--

यह एक किचन दिखाई--

यह एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा--

ब्लर दिखाई दे रहा--

दे रहा है जहां पर कुछ एम्बुलेंस --

कुछ प्रदर्शित किया जा रहा--

है नीला आसमान--

यहां कुछ लड़कियां योगा अभ्यास--

है पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ दिखाई--

आदमी दिखाई दे रहा है जिसके--

है तथा बहोत से पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं।